एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमे मे एक खंभा दिखाई दे रहा है एक रोड दिखाई दे रही है एक बड़ा पेड दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है रोड दिखाई दे रही है।

एक पिलर दिखाई दे रहा है जिस मे काफी सारे झाडिया दिखाई देती हुई--

मसालों की दुकान है जिसमे गरम मसाला मिर्ची धना हल्दी और अन्य मसाले दिखाई दे रहे है कुछ खड़े मसले भी रखे है।

एक फूल का बुके दिखाई दे रहा है एक मोर थर्मोकोल से मोर बना हुआ है।

एक बुकों का घर दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल गोल दिखाई दे रहा है।

एक एयरपोर्ट है जिसमे काफी सारी डिजिटल टीवी या लगी हुई है टाइल्स लगे हुए है लाइटिंग दिखाई दे रही है कुछ लोग जाते देखाई दे रहे है कुछ लोग ट्रॉली लिए हुए है समान की।

एक करो एक मैदान है मैदान के अंदर पानी है पानी काफी गंदा दिखाई दे रहा है।

एक टंट लगा हुआ हे जिसमे पूले के फूल के बुके लगे हुए है।

और घर भी दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है पहाड़ काफी ऊंचा दिखाई दे रहा है और बाहर बादल सफेद दिखाई दे रहे हैं।